इस फोटो में एक बड़ा कमरा है।

जो की हरे रंग का उसका ढक्कन है।

इस फोटो में एक बड़ा सा बिल्डिंग है।

कुछ आदमी खड़े हैं और कुछ बैठे हुए हैं।

इस फोटो में एक बड़ा सा कमरा है।

कार का आगे का बोनट खुला हुआ है।

नीचे हरे घास उगे हुए हैं।

पीछे के कपड़े का रंग सफेद और गुलाबी है।

सभी रैको पर बहुत सारी अलग-अलग चीजें रखी हुई हैं।

रेंको पर बहोत सारे छोटी छोटी डब्बे और अलग अलग चीजे रखी हुई हैं।

कुछ लोग बैठे हुए हैं।

एक आदमी ने नीले रंग का टी शर्ट पहना है।

कुछ पोल लगे हुए हैं।

पीछे एक सफेद रंग की स्कूटी भी है।

इस फोटो में एक दुकान है।

कारपेट हरे रंग का है।

और पोस्टर काले रंग का है।

दूसरी तरफ बहोत सारे हरे भरे बड़े पेड़ हैं।

एक व्यक्ति हाथ में फोन रखा है।

इस फोटो में एक बड़ी सी इमारत है।

और अंदर लाइट जल रहा है।